हम्म दिख रहा है जो झरना है इसमे लोग नहाते होंगे काफी एंजॉय करते होंगे लेकिन बहुत ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा है पचमड़ी मे भी ऐसा ही है कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है ये--

और ए जो पानी है बड़ी बड़ी पहाड़ीयो उपर से आ के नीचे --

ये क्या है ये यहा का चीता वगैरा यहा रहते होंगे जिनका जो पेंट किया हूआ है काफी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है।

ये हमको रैबिट दिख रहा है जो की बहुत अच्छा है और इसकी आँख जो पिक है बहुत हि अच्छा दिख रहा है और ये उसिका घर है ये देख वाला बैठा है ये देखो ये खरगोश है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है।

देखिए जो पहाड़ी है काफी ऊँची पहाड़ी है और उसमे से पानी निकल के जा रहा है ये देखिए नीचे की और गिर रहा है काफी अच्छा लग रहा है ना।

ये देखिये ए जो पहाड़ी हे ये पहाड़ी हमको दिख रही है और जहा से ये उपर से पानी निकल के आ रहा है जोकि एसे दिख रहा है जैसे की दूध जा रहा हो यहा से लेकिन ये पानी है।

ये एक धुले का सीन दिख रहा है काफी बड़ी-बड़ी स्लाइड्स है देखो कित्ता मस्त दिख रहा ये जो क्रिशॲन्ट है बहुत अच्छा यहा पे लोग आते है नहाते है और एंजॉय कर--

और बहुत मस्त दिख रही है ये जो नज़ारा है ये कहा का है धुले का महाराष्ट्र के धुले मे इसथित है और ए जो सामने है इसमे शायद है ए वो है क्या बोलते है तालाब.

होंगे बहुत अच्छा इस स्लाइड मे बैठ ते हुए बहुत मजा आता होगा जिसमे लिखा है वेलकम आईए आप बैठीए एंजॉय करिए। बहुत ही मस्त स्लाइड --